वहां पे छोटा सा स्टील का कटोरी रखा हुआ है और बहुत सारे बोरा पे कुछ रखा हुआ है और एक--

एक कुर्सी भी है बटखरा रखा हुआ है सफेद कलर का दीवार--

व्हाइट कलर का दीवाल है और बाहर पे बैलून चिपकाया हुआ है और यहां पे व्यक्ति लोग--

और बोलोरो भी है और दीवाल का कलर लाल और सफेद कलर का है और दिवाल पे लाइट भी है।

यह एक होटल है यहां पर लिखा हुआ है तमाशा।

और दिवाल पे पोस्टर एक चिपकाया हुआ है और कुर्सी भी रखा हुआ हैं।

और पर्दा भी लगाया हुआ है और पंखा भी लगाया हुआ है और एक बोर्ड रखा हुआ है वाइट कलर का।

यहा पे खंबा भी है अलग अलग प्रकार के छोटा बड़ा घर बनाया हुआ हैं।

और विद्यालय के बॉर्डर के किनारे तरफ से घेरा हुआ है।

यह एक पंडाल है यहां पे दो व्यक्ति खड़े हैं एक लेडीज हैं एक जेंट्स है।

और पीछे में बहोत लो व्यक्ति लोग खड़े हैं और यहां पे एक मूर्ति का फिगर भी है यहां पे लेजर लाइट लगाया हुआ है।

और यहां पे एक बच्चा बैठा हुआ है ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनकर नदी के किनारे फूल फुलाया हुआ है।

यहां पे ब्लैक रंग का पक्षी बनाया हुआ है और यहां पर गंजी है अलग अलग कलर का।

ऊपर ऊपर रखा हुआ चड्डी एक चड्डी वाला पोस्टर है दीवाल सफेद कलर का है।

बुलू रंग का चपल दिख रहा है एक व्यक्ति के टीशर्ट पे ऊंट छापा हुआ है जमीन का कलर है काला।